येलो रेड ऑरेंज --

थोड़ी बारिश हो भी चुकी है।

जहाँ पर तीन नाव खड़ी हुई है।

अलग अलग कलर की रेड ब्लू ग्रीन --

यहाँ पे कुछ गमले भी रखे हुए है जिसमे पौधे है।

खजूर का पेड़ दिख रहा है और एक--

बहोत ही प्यारा मौसम और बहोत ही प्यारे-प्यारे पौधे यहाँ पे बहोत कई लोग है जो स्विमिंग पुल में नहा रहे ।

निकलती हुई दिख रही है।